हम लोगों को सामान खरीदना चाहिए दुकान की किराना शॉप से ही खरीदना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत अ आसानी से मिल जाते हैं। कहीं हमें जाना नहीं पड़ता है।